मंदिर है पोस्टर लगा हुआ है।

पानी में एक लंबा सा डंडा जैसा--

पानी गहरा है देखने में बहुत प्यारा लग रहा है।

बच्चा भी है एक बच्चा साइकिल पर बैठा हुआ है।

अ पोस्टर लगा हुआ है।

पंखा लगा हुआ है।

बगल में किरना का दुकान है।

व्हाइट कलर का कुछ ऐसा बना हुआ है।

कालीन जैसा बिछाया हुआ है।

इसे सजाया हुआ है पोस्टर लगा हुआ है।

बाहर में बाइक लगा हुआ है बहुत सारे आदमी लोग हैं।

चार आदमी बैठे हुए हैं।

जो एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं।